यह एक बोहोत ही पुराना गेट है यहाँ पर है पत्थरों के बीचो बीच एक दीवार है इसमे एक गेट बना हुआ है।

यह एक बहुत बडे घने जंगल की तस्वीर है यहाँ पर छोटो-छोटो पेंडोंसे खेती की जा रही है।

लोगोंकों बैठने के लिए यहा पर खुर्चिया लगाई गयी है और यहा पे बहोत ही हरिबरी दुवा फूल की लगाए गए है यहा पर बड़े- बड़े पेड़ भी है और यहा पर मेहँदी के पेड़ोंसे बोंडरी भी बनाई गयी है।

यह एक बहुत बड़ा डैम है जिसका मनोरंजन लेते हुए यह लोग यह लोग इस डैम का बहुत मनोरंजन ले रहे है।